इन लड़कियों ने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

लड़कियों के जमीन के नीचे गोल घेरे बनाए हुए हैं।

एक बेंट लगा हुआ है जो दोनो तरफ पीला और ऊपर मे वाइट कलर का है।

एक औरत झाड़ू लगाके कचरा साफ कर रही है।

इसके ऊपर दो छाते लगे हुवे हैं।

नीचे कुर्सी लगे हुए हैं। उसका कलर ग्रीन है।

और तीन लड़के ने फौजी का ड्रेस पहना हुआ है।

फोटो फ्रेम में फूल येलो और रेड कलर का है।

चट्टानों से पानी बह रहा है इसके अगल बगल में बहुत झाड़ियां हैं।

झाड़ियां के बीच एक लड़का है जिसने रेड कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना है।

के दीवाल का कलर वाइट है नीचे जमीन का कलर ब्राउन है।

निर्तकी ने औरेंज कलर का साड़ी पहना है।

नृत्यकी के माथे में गजरा है।

कई यहां एक कुर्सी है कुर्सी का रंग ब्लू है।

इसमें एक मशीन रखा हुआ है जिसमें नाइन जीरो जीरो लिखा हुआ है।

मसीन में एक पाइपिंग किया हुआ हैं।

इन रोड के बगल में दीवाल है।

यह चिड़ियांघर का दृश्य है। जिसमें बहुत सारे हिरण खाना खा रहे हैं।

बहुत सारी कुर्ती समेटे हुए हैं।

दो टेबल है टेबल का रंग लाल है।

जमीन के नीचे बालू है बालू में वाइट कलर का लाइन है।

जमीन के पास चार छड़ हैं जिनका रंग ब्राउन है। जमीन के पीछे पेड़- पौधे हैं।

एक ईलक्ट्रॉनिक दुकान का दृश्य है।

ऊपर में एक बैनर है जिसमें मुकुंद पंडित लिखा हुआ है ।

पार पांच पिलर है बाहर में एक पेड़ है।